उसमे गेट भी लगा हुआ है।

यह मिठाई का दुकान है देख सकते है इसमें दो फैन लगे हुए है ।

और उल्टा सोए है।